हमारे छत्तीसगढी जिले में अनेक प्रकार के ऐसे आकरेतीक जगह है जहाँ पे पत्थरों के नीचे गुफ़ाएँ पाए जाता है मनुष्य वहाँ घूम-- देखने के लिए जाया करता है।

जेसे गाड़ी स्क्रोपिओ का मैकेनिक जो उसे ठीक करने के काम में आता हैं।